एक बड़ा तालाब टाइप नदी है जहा पे पेड़े लगे हुए है छोटे-बड़े बहुत पेड़े लगे बहुत सारे --

एक नदी है जहा पे व्हाइट कलर का पानी है जहा पे साइड में व्हाइट कलर का पानी बेह रहा है। पर्पल कलर का पानी बेह रहा है।

ऊपर गणपती बाप्पा की मूर्ति बनी है उधर हरी-हरी बेला है।

इधर पेड़ लगे उधर से महल दिख रहा है।